यहाँ पर आयरॉन कर रहे हैं यहाँ पर धोबी आयरन कर रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन से --

यह हमारे सुपौल जिले मे यह सरकारी भवन काफी बड़ा है ।

इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर भी हैं।

लेबर गिट्टी को उठा कर दे रहे हैं यहां एक मालिक भी हैं वे देख रहे हैं।

यहाँ पर बच्चे को कपड़ा कॉपी कलम एवं खाना सभी चीज फ्री मिलती है।